बहोत ही खूबसूरत तरीके से यह फू फ्लावर्स को बनाया गया--

पैकेटस दिखाई दे रहे है नमकीन के और किट कैट का एक बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे जिसके अंदर चॉकलेटस है।

और लीमका के बोटल्स रखे हुए हें और अन्दर बोहोत सारे हमें ग्रोसरिस के सामान दिख रहा हें।

पेंट इसके अंदर एक एसी भी है वाईट कलर की वाईट कलर का इसका वाल का कलर है।

एज के आतरा बहुत सारी घास जाड़ है और जाली की यहाँ पर के--

बाउंड्री है और बहोत सारी मठ्ठी भी है यहां पर जो स्विमिंग पूल का है वो ब्लू कलर का आउटलाइन है।

हनी का कलर बिलकुल ही ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है ये दिन का समय है।

वो भी ब्लू कलर का ही है एक पेड़ है बहुत बड़ा इमली--

कुछ बसस है मिनी बसस और एक झुला टाइप है।

और नमकीन बिस्किट भी हैं यहाँ पर और एक ट्रोली है।

यहाँ पर बहुत सारे लोग पेट्रोल भराने के लिए आए हुए--

और जो विंडोज हैं पूरे कांच से बने हुए हैं फ्रंट में भी जो विंडो --

ओरेंग कलर का इसका पेंट्रोल पम्प का वोटर है ब्लू कलर इसके आउटलाइन है।

ब्लैक कलर का उसका पेंट है वो पेट्रोल भरवा रहा है।

बॉक्सेस हैं और चॉकलेट के डब्बे हैं यहाँ पर डेरी मिल्क का डब्बा है बाहर एक कंटेनर रखा हुआ है जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स हैं।

शोरूम है उसमे दो कार्स ठहरे हुए है वाइट कलर की कार है एक रेड कलर की कार दोनों कार्स न्यू --

और दो टाके रखे हुए है नल के लिए ब्लैक कलर के दो टा--

आज बिल्डिंग में बहुत सारे कपड़े सूखने के लिए डाले हुए है ऐसी है।

बट पोधे भी है रेड एंड ओरेंग कलर के फ्लावर्स है।

एक शॉप है जिसके अंदर बहुत सारे थिनर्स रखे हुए है पेंट रिमूवर रखा हुआ है स्टांप्स रखे हुए हैं।

पर्पल कलर की लाइटिंग्स हैं और ऊपर जो रूह है जो बहु--

झूमर लगे हुए हैं गोल्डन कलर के उसके ऊपर बल्ब्स लगे हुए हैं व्हाइट कलर की डेकोरेशन है व्हाइट कलर के परदे हैं।

बहुत सारे चेयर्स रखे हुए हैं कुछ लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए--

राइडर्स के नीचे शेप दिया गया है वाइट कलर के एलीफैंट का रेड कलर का एक स्लाइडर है औ--

और दो बोर्ड लगाए गए हैं उस पर एस_बी_आई नाम के--

ईशु निकेतन ट्वेंटी टू मॉडल एस_आर सेक्शन स्कूल --

एक प्ले ग्राउंड है उसमें बहुत सारे झूले हैं।

ब्लू कलर का इसका पेंट है रेड कलर इसके आउट लाइन्स है।

और ये रूम का कलर व्हाइट कलर में है बेड्स का कलर --

अपर भी बहुत क्लीन है वो भी वाईट कलर के है।

इसमें कुछ लोग ठहरे हुए हैं अंदर लाइन लगाकर एक पिंक कलर की शर्ट पर आदमी ठहरा हुआ हैं जिसने ब्लैक कलर का जीन्स पहना है उसने हाथ में परनी पकड़ी हुई--

इसका पूरा फुल स्टेपअप ब्राउन कलर में है और वाईट कलर की इसकी विंडोस है।

और यहाँ पर दो कार के ऊपर कवर्स चढ़ाए हुए हैं और एक बिल्डिंग का कलर सिर्फ ईंटों का है उसके ऊपर पेंट नहीं है।